काफी भीड़ लगी हुई है।

पानवारी भैया सोफा लगाया गया --

सफ़ेद-सफ़ेद नीचे ऊपर पहनी हुई है।

यहाँ पे सभी प्रकार के सामान मिल रहा--